एक बुलेट है ब्लैक कलर का और उसके सामने हेलमेट भी है।

ये एक दुकान है और यहां पर बहुत सारी बोरियां है व्हाइट कलर की।

बांस भी है टीन भी है और बहुत सारे घास भी उगे हुए हैं।

ये एक जिम है और यहां पे बहोत सारे जिम के इंस्ट्रूमेंट्स है।

एक एक लड़के ने रेड कलर की चुन्नी ओढ़ी हुई है।

ये एक ग्राउंड है और यहां पे बहोत सारे घास है।

और एक रूम बना हुआ है ग्रीन कलर का सामने लाइट पोस्ट भी है।